यहाँ पर एक अह सुखी झाड़ियां सी दिखाई दे रहे है इनमे से कच्चा रास्ता भी दिख रहा है और एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर एक व्हाइट बोर्ड बना हुआ है जिस--